मौसम धूधला -सा दिख रहा हैं।

एक रोड दिखाई दे रहा है और कुछ बिजली के खंभे दिख रहे है उसके ऊपर डीपी रखी हुई है।

कुछ टगीं हुई फोटो दिखाई दे रही हैं पीले रंग का चादरा ओढ़े हुए है।

और कुछ ट्रइया रक्खी हुई हैं और कुछ आलू दिख रहे हैं।

बिजली की लाइन दिखाई दे रही है मौसम धुंधला सा दिख रहा है।

एक हार्विस्टर चल रहा है गेहूं कटाई हो रही है।

एक व्यक्ति खड़ा है लाल धारियो की बनयान पहने हुए। एक पैन्ट पहना है व्हाइट कलर का। दो व्यक्ति बैठे है नीचे।

गद्दे वाली काले कलर की --